जब ये एक एल_ई_डी हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ--

फायर ब्रिगेड सिलेंडर है पंखा लगा हुआ है कैमरा दिख रहा है एक दो औरतें दि--

बुक्स या कुछ है फोन पे दिखाई दे रहा--

सामने कुछ बॉक्स भी नजर आ रहे हैं नीचे रखें हुए बॉक्स --

और कपड़े टंगे हुए है पिल्लो रखे हुए--

कचरा है पेड़ों का कचरा इकट्ठा करा कूड़ा दिख रहा है।

कुर्सियां रखी हुई है टेबल है।

बैलून से भी इसको सजाया गया हैं आस पास।

और ये डब्बे पे कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सड़क के ब्लॉकिंग लगी हुई है साइड में जिसमें सड़क दिख रही है थोड़ी सी कच्ची जैसी है।

यह एक बस स्टेशन जैसा दिख रहा है।

यहां कुछ कबूतर जैसे जानवर हैं कुछ पक्षी है।

निकाल कर जा रहा है एक आदमी गुफा के अंदर से--

जहां पर नीचे धोबी जैसा भी दिख रहा है।

यह एक हाइवे रोड दिख रहा है ब्रिज है।

पन्नी दिख रही है उनकी परछाई दिख रही है सड़क पे ए--

साड़ी दिख रही है ऑटो दिख रहा है पीछे ट्रक आ रहा है।

सामने एक बहोत बड़ी पोस्टर्स लगी हुई है।

यह एक पेंट की दुकान दिख रही है।

जहां डिब्बो मे अलग प्रकार के पेंट हैं छोटे बड़े लीटर के डब्बे दिखाई दे रहे--

उस लिक्विट की है सो टेबल से जमाया गया है।

पानी की टंकी रख रही है। ऑरेंज कलर जैसा कुछ दिख रहा है।

मुझे कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है ये चॉकलेट टाइप सा टुकड़ा--

जिसके आगे एक गार्ड वाला बैठा नजर आ रहा हैं।

अंदर भी कुछ लोग खटिया वटिया पे बैठे हैं टंकी दिख रही है कार खड़ी है बादल छाए दिख रहे--